यहाँ एक हिरन दिख रीहा है। उसका एक बच्चा भी बच्चा भी दिख रीहा है पीछे थोड़े हिरन खड़े दिख रहे हैं। यहाँ पे पेड़ पेड़ के पत्ते सूखे जा रहे हैं घांस सूख ही गये।

दिख रही है। काला ट काला-काला पानी नदी का गंदा सा --

हरी-हरी घाँस दिख रही है आगे पहाड़ सी दिख रहे हैं हमें और पत्थर लगे हैं थोड़े बाकी तो फस्ट क्लास है।

यहाँ बैंक ऑफ बरोडा का दिख रीहा है।

खम्भे से लग रहे हैं यहाँधीरे-धीरे रुक